और यहां पर सरकारी काम के तरह बहुत सारे कर्मचारी जो अंदर होंगे--

इसका गेट भी बहोत विशाल है जो दूर से देखा जा सकता है और ये बिल्डिंग यानी इमारत भी बहोत बड़ी है।

जो यहां से वहां ट्रक वाले इधर से उधर लेकर जाते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं।

को धोने में उनको काफी दिन लग जाता है क्योंकि अगर दूर का रास्ता तो बहोत म--

ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने खडे हैं यानि ये यहां पर इस बिल्डिंग को बनवाने में सहयोग दे रहे हैं और हस्ते हुए--

और मानव जाति का कल्याण कर सके इसीलिए यहां पर महाविद्यालय में वह पढ़ाई करने के लिए आता है।

जहां पर होटल स्टार लिखा हुआ है और इसके अगल बगल में रंग बिरंगे झंडे लगाए गए हैं।

उसी को को कैप्चर करने के लिए देखिए एक तरह के पर्दे एक तरह का इंटीरियर यूज़ किया जाता है जो दूर से हम देख सकते हैं।

और ऊपर आसमान नीला नीला और बहोत ही ऊंचाई से लिया गया है घास भी है मिट्टी भी है दूर किसी का घर भी नजर आ रहा है।

ये एक ऑटोमोबाइल की दुकान है यानी ऑटोमोबाइल यहां जहां पर मोटरसाइकिल वगैरह मरम्मत की जाती है।

वेटलिफ्टिंग के लिए वेट अह लिफ्टिंग के लिए बहुत ही हेवी मशीन और सामने एक बड़ा सा शीशा लगा है ताकि लोग अपना--

और बिल्डिंग का कलर जो है। येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन है और काफी उचाई पर है और खयाल से ये बिल्डिंग --

अच्छे से चले बिना रुके बिना रुके परेशान करें अच्छे से अपने मालिक को अपने घर तक--

और जो बहोत ही स्टाइलिश लगते हैं बहोत ही आकर्षक लगते हैं और आजकल इसका टाइप बहोत ट्रेंड चल रहा है।

और इसका नाम जो है पार्लर का वो है जिगरी जिगरी टैटू जहां पर--

काफी खुला और हवादार है और उसके ऊपर भी नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा लगा रहा--

और यहां पर हर टाइप की हर कंपनी का जो भी ब्रांड आप चाहते हो वो सब सामान आपको यहां पर आसानी से मिल जाएगा।